एक लड़का है उसने शादी के फंक्शन में है जिसका फोटो बहुत ज्यादा जबरदस्त है।

और भी क्या ही बताऊ ये इसमें ये लड़की ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए है और पतली दुबली है और ये बिल्डिंग के कलर बहुत ज्यादा खुबसूरत है।

ये पैर में देख सकते है की इचिंग मतलब चोट लग गया है जिसके कारण इसको पैर ऊपर करके रखने को बोला गया है।

ये देख पा रहे होंगे की ये दो लोग जो की चला रहे है नाव ये बहुत अच्छा लगता हैं करने मे नाव चलाना ज्यादा पानी नहीं होता है समझे --

यह भी देखी क्रिस्चियन का ही बिल्डिंग हे यहाँ क्रिसमस डे हे आज सरे लोग एक साथ हे ताकि मतलब बिल्डिंग विल्डिंग को कलर वालर किया गया देखी बैलन कितना खुबसूरत लाग रहगा है।

एक बच्चे का स्कूल है जो कि एक प्रोजेक्ट सारे बच्चे मिल के एक ही प्रोजेक्ट बना रहे है।

फल का दुकान है देखिए एक इसमें अमरूद है केला है केला तोह नहीं है तरबूज है सेब है फल वगेरा खरीद सकते हैं।